जहां पर वाइट कलर के बोर्ड पर--

इस पर हमें टीन शेड दिखाई दे रहा है।

घर या ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ फर्नीचर भी लगा हुआ है।

कुछ कलर कलर के कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसके आस पास हमें हरा भरा नजारा दिखाई दे रहा है।

फूलों के हार की और फूलों की बहुत सारी दुकानें नज़र आ रही हैं।

यहाँ पर जूते और चप्पल रैक में लगे हुए हैं जिनपर ट्वेन्टी परसेंट ऑफ का एक बोर्ड भी नज़र आ रहा।

जिसमें से रिसेप्शन एरिया में हमें एक वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर कुछ मजदूर वर्ग के लोग मजदूरी का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे काफी धूप का माहौल और मौसम --

यह एक वाइट कलर की टाइल्स के ऊपर रखे हुए हैं।

पुलिया बनी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक जंगल का नजारा है यहां पर बहुत ही पास पास--

इस फोटो में हमें एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

बहुत सारे हरे भरे पौधे नजर आ रहे हैं।

हमें ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पर्दे और कुशन कवर की शॉप्स दिखाई दे रही है।

यहां नीचे स्टेज पर दो व्यक्ति--

और यह बच्चे फैंसी ड्रेस में बैठे हैं।

तीज पर माइक में कुछ बोलने की कोशिश कर रही है।

कुछ गैस चूल्हे रखे हुए हैं।

यहां पर सेक्शन बने हुए हैं जिसमें की कुछ मटेरियल रखा हुआ है।